tux typing के परिचय पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में आप tux typing और tux typing इंटरफेस के बारे में सीखेंगे
आप सीखेंगे कि:
कम्प्यूटर कीबोर्ड पर जिसमें अंग्रेज़ी कीज हैं स्पष्टतः तेज़ी और निपुणता से टाइप कैसे करें
आप टाइप करते समय हर बार नीचे कीबोर्ड पर देखे बिना टाइप करना भी सीखेंगे
tux typing क्या है
tux typing एक टाइपिंग ट्यूटर है
यह आपको सिखाता है कि संवादात्मक गेम्स का उपयोग करके टाइप कैसे करें और धीरेधीरे आपको भिन्न अक्षरों को टाइप करने से परिचित कराता है
आप अपनी गति से टाइपिंग सीख सकते हैं
और धीरेधीरे विशुद्धता के साथ अपनी टाइपिंग रफ्तार बढ़ा सकते हैं
tuxtyping आपको अभ्यास के लिए नये शब्द प्रविष्ट करने और टाइपिंग के लिए भाषा को सेट करने के लिए सक्षम बनाता है
यहाँ मैं उबंटू लिनक्स 1110 पर tux typing 180 का उपयोग कर रहा हूँ
आप उबंटू सॉफ्टवेयर सेंटर का उपयोग करके tux typing संस्थापित कर सकते हैं
उबंटू सॉफ्टवेयर सेंटर पर अधिक जानकारी के लिए इस वेबसाइट पर उबंटू लिनक्स के टयूटोरियल्स का अनुकरण करें
tux typing खोलें
पहलेdash home पर क्लिक करें जो आपके कंप्यूटर डेस्कटॉप के सबसे ऊपर दायें कोने पर एक गोल बटन है
search बॉक्स प्रदर्शित होता है डैश होम के आगे सर्च बॉक्स में tux typing टाइप करें
सर्च बॉक्स के नीचे tux typing आइकन प्रदर्शित होता है
tux typing आइकन पर क्लिक करें
tux typing विंडो प्रदर्शित होती है
tux typing में निम्न मेन्यू शामिल हैं
fish cascade – खेल क्षेत्र
lessons – जिसमें विभिन्न पाठ शामिल हैं जो हमें अक्षरों को सीखना सिखायेगा
options – जिसमें मेन्यू शामिल हैं जो हमें शब्दों को संपादित करने वाक्य टाइप करने टक्स टाइपिंग प्रोजेक्ट पर जानकारी प्राप्त करने और भाषा को सेटअप करने में मदद करता है
quit – खेल छोड़ने के लिए क्लिक करें
पाठों का उपयोग करके टाइप करने का अभ्यास करते हैं
मुख्य मेन्यू में lessons पर क्लिक करें
पाठ सम्मिलित विंडो प्रदर्शित होती है
पहला पाठ सीखने से शुरू करें
basic_lesson_01xml पर क्लिक करें
निर्देशों के साथ विंडो प्रदर्शित होती है निर्देश पढ़ें
पाठ शुरू करने के लिए space bar दबाएँ
कीबोर्ड के साथ विंडो प्रदर्शित होती है
अब हम अक्षर a टाइप करना सीखना शुरू करेंगे
अभ्यास शुरू करने के लिए p दबाएँ
एक विंडो जो टाइप करने के लिए अक्षरों को दर्शाती है प्रदर्शित होती है
यह लाइन क्या दर्शा रही है aaa aaa…
आपको इन अक्षरों को टाइप करने की आवश्यकता है
इस लाइन को टीटर्स लाइन नाम दें
अब हम अंग्रेजी कीबोर्ड देखते हैं जो हममें से ज्यादातर द्वारा उपयोगित स्टैंडर्ड कीबोर्ड है
क्या आप a के चारों ओर लाल वर्ग देख रहे हैं यह दर्शाता है कि यह वह अक्षर है जिसे अब आपको टाइप करना होगा
कीबोर्ड की पहली लाइन संख्या विशेष अक्षरों और बैकस्पेस की दर्शाती है
टाइप key गये अक्षरों को मिटाने के लिए backspace की दबाएँ
कीबोर्ड में वर्णमाला संख्या और अन्य अक्षरों की तीन रोज़ भी होती हैं
कीबोर्ड की दूसरी लाइन में वर्णमाला कुछ विशेष अक्षर और enter की सम्मिलित हैं
अगली लाइन पर जाने के लिए आप enter की दबा सकते हैं
कीबोर्ड की तीसरी लाइन में वर्णमाला colon semicolon और caps lock की हैं
बड़े अक्षरों में टाइप करने के लिए caps lock की का उपयोग करें
keyboard की चौथी line में वर्णमाला विशेष अक्षर और shift की सम्मिलित हैं
बड़े अक्षरों में type करने के लिए किसी भी वर्णमाला की को shift की के साथ दबाएँ
की में ऊपर दिए गये अक्षर को type करने के लिए shift की को किसी भी दूसरी की के साथ दबाएँ
उदाहरणस्वरुप संख्या 1 वाली की में ऊपर विस्मयादिबोधकचिह्न है
विस्मयादिबोधकचिह्न को टाइप करने के लिए 1 के साथ shift की दबाएँ
कीबोर्ड की पांचवी लाइन में ctrl alt और फंक्शन कीज़ सम्मिलित हैं यह स्पेस बार को भी सम्मिलित करता है
अब देखते हैं यदि यहाँ टक्स टाइपिंग कीबोर्ड लैपटॉप कीबोर्ड और डेस्कटॉप कीबोर्ड में कोई भिन्नताएँ हैं
ध्यान दें कि टक्स टाइपिंग कीबोर्ड और लैपटॉप्स और डेस्कटॉप में इस्तेमाल किये जाने वाले कीबोर्ड्स समान हैं
अबअब कीबोर्ड पर अपनी उँगलियों का सही स्थान देखते हैं
इस स्लाइड पर देखें
यह उँगलियाँ और उनके नाम दर्शाता है बाएँ से दायें ओर उँगलियों के नाम हैं:
little fingerring fingermiddle finger index finger और thumb
अपने keyboard पर अपना बायाँ हाथ keyboard की बायीं तरफ रखें
यह सुनिश्चित कर लें कि छोटी ऊँगली अक्षर a पर हो
अनामिका अक्षर s पर हो
मध्यमा अक्षर d पर हो
तर्जनी अक्षर f पर हो
अब अपना दायाँ हाथ keyboard की दायीं तरफ रखें
सुनिश्चित कर लें कि छोटी ऊँगली colon/सेमीकॉलन की पर हो
अनामिका अक्षर l पर हो
मध्यमा अक्षर k पर हो
तर्जनी अक्षर j पर हो
स्पेस बार को दबाने के लिए अपना दायें अंगूठे का इस्तेमाल करें
दो हाथों का चित्र आपको अक्षर को टाइप करने के लिए सही ऊंगली के उपयोग में मार्गदर्शन करेगा
जानें कि दायेंहाथ की छोटी ऊँगली की लाल क्षेत्र क्या है
आपका अंदाजा सही है आपको a टाइप करने के लिए उस ऊँगली का उपयोग करना है
कीबोर्ड पर अपनी ऊँगलियों को रखें जैसा कि पाठ में पहले दर्शाया गया है
अब typing शुरू करें
जैसे ही हम टाइप करते हैं अक्षर टीचर्स लाइन के नीचे लाइन में प्रदर्शित होते हैं
इसे स्टुडेंट लाइन नाम दें
अब वो अक्षर टाइप करें जो टीचर्स लाइन में प्रदर्शित नहीं हैं
क्या आपने देखा कि गलत टाइप किए अक्षर स्टुडेंट लाइन में प्रदर्शित होते हैं यह प्रदर्शित नहीं होते
इसके बजाय कीबोर्ड में गलत टाइप किए गए अक्षर पर एक x चिन्ह कुछ समय दिखाई देता है
अब कुछ और अक्षर टाइप करें
अब अपनी टाइपिंग के मैट्रिस की गणना करें
अब आपको अनुमान लगाना होगा कि दायीं ओर की फील्ड्स क्या दर्शाती हैं
time – आपकी टाइपिंग की गति को निर्दिष्ट करता है
chars –आपके द्वारा टाइप किए गए अक्षरों की संख्या दर्शाता है
cpm आपके द्वारा प्रति मिनट में टाइप किए गए अक्षर दर्शाता है
wpm – आपके द्वारा टाइप किए गए शब्दों की संख्या निर्दिष्ट करता है
errors – आपके द्वारा टाइप की गई गलतियों की दर्शाता है
accuracy – आपकी टाइपिंग की शुद्धता को दर्शाता है
मुख्य मेन्यू में वापस जाने के लिए escape की को दो बार दबाएँ
हमने अपना पहला टाइपिंग पाठ सीख लिया है
कम गति में शुद्ध टाइप करने के लिए पहली बार सीखने के लिए यह अच्छा है
एक बार हम बिना गलती किए शुद्ध टाइप करना सीख लें हम टाइपिंग गति बढा सकते हैं
इसी के साथ हम टक्सटाइपिंग पर इस ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर आ गये हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने टक्सटाइपिंग इंटरफेस के बारे में सीखा अपना पहला टाइपिंग पाठ पूर्ण किया
यहाँ आपके लिए एक नियतकार्य है
basic_lesson_02xml पर जाएँ
इस लेवल के साथ अभ्यास करें
इस लेवल में सभी अक्षरों का टाइप करें और enter की दबाएँ
इसी तरह से आप दूसरे पाठ का अभ्यास कर सकते हैं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
spoken tutorial project team: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
इस मिशन पर अधिक जानकारी इस लिंक पर उपलब्ध हैspoken hyphen tutorial dot org slash nmeict hyphen intro
यह स्क्रिप्ट देवेन्द्र कैरवान द्वारा अनुवादित है आईआईटी मुम्बई की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ